बहुत सारी गाड़ियाँ खडी है और बहुत सारे दुकान भी लगे हुए जिसपे आप जाके सामान खरीद सकते हो और पैसे देके खरीद सकते हो।

सिटी कार्ड का नाम का मॉल ये बोहोत ही अच्छा दिखता है। इसमें जो लाल कलर की पट्टी लगायी गयी है बोहोत ही खुबसूरत आई लव इट ।

ये का व्यू बहुत अच्छा। इसके अन्दर आप जा सकते हो और निकल --

ये व्यक्ति शर्ट और पेंट पहने हुए है । जूते भी पहने हुए है और ये चश्मा भी पहने हुए है । यहाँ पे बहुत धुप है । निचे बहुत पानी है और बहुत उम् इसके पीछे पूल है । जिसके पूल से आप इधर चढ़ के उस साइड जा सकते हो ।

यहाँ पे बहुत सारे घर हैं अजीब प्रकार के हैं। एक झाड़ी पे बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। घर भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे गेट लगे हुए हर घर पे हर एक गेट लगा हुआ है। यहाँ से बहुत दूर खेत दिख रहा है जिसमें धान रोपा जा सकता है।